और एक ने ब्राउन और एक ने ग्रे जींस पहनी --

यह कोई घूमने-फिरने का स्थल है।

नृत्य दर्शया गया है बहुत सारे लोग इसमें डांस कर रहे हैं एक सड़क दिखाई दे रही है।

परांठे दिखाई दे रहे हैं।